इसमें लाई दिख रही है। इसमें इन्सान दिख रहे हैं। इसमें रेलिंग दिख --

रही है। इसमें रही है।

इसमें मंदिर दिख रहा है। इसमें लाइट दिख रही है।